यह एक झरने की तस्वीर है जहां पर पेड़-पौधे लगे हुए है और सफेद दूध जैसा पानी नज़र आ रहा है।

और यह जमीन पर खड़ा है पीछे पेड़ पौधे नजर आ रहे है और आसमान नजर आ रहा है।

और यहां पर पोस्टर लगे हुए हैं सीढ़ी बनी हुई है और टेंट लगा हुआ है।

यह एक मोर की तस्वीर है जहां पर मोर ऊपर लकड़ी पर बैठा हुआ है।

यह एक घर है जो कि ऊपर कि छत से दिखाई दे रहा है यहाँ पर एक खिड़की है।

एक दुकान की तस्वीर है जहां पर काफी सारे प्रोडक्टस मोजूद है यहा पर तेल रखा है साबुन रखी है।

यह एक घर के सामने की तस्वीर है जहां पर एक गाड़ी खड़ी है जो लाल रंग की है।

यह एक घर की तस्वीर है जहां पर ऊपर कैमरा लगा हुआ है निचे एक छोटा सा तखत हैऔर दो अलमारी लगी हुई है।